एक आदमी बैठा है उसके सामने बहुत सारी मच्छियां है उसके बाजू में भी मच्छी वाला है कुछ आदमी लोग खड़े होकर देख रहे हैं मच्छिया।

यहां पे लाइन से पर्दे लगे हुए बहुत ही अच्छी तरीके से पर्दे से डेकोरेट किया गया है पीछे टाइल्स लगी हुई है साइड में सीढ़ी बनी हुई है।

यहां पे बहुत सारी गोनियां रखी गई है कुछ आदमी लोग बैठे है कुछ आदमी खड़ा है सामने एक ट्रैक्टर है ट्रैक्टर में सब लोग देख रहे आजू बाजू में बहुत सारी पेड़ लगे है।

पीछे उनके पोस्टर लगा हुआ है टेबल हैसाइड में रखी हुई।

आजूबाजूमें सब यहां पर झाड़ लगे हुए हैं। गेट बना हुआ है। गेट के अंदर भी बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। छोटे छोटे पौ--